काले काले सीट दिखाई दे रही है काले कलर की बहुत सारी कुर्सियां भी रखी हुई है एक आदमी बैठा हुआ है सामान भी दिखाई दे रहा है दिख रही है नीचे मैरून कलर की फर्श हो रही--

हो रहे है और कई सारे सामान भी रखे हुवे है एक लड़की का पोस्टर भी लगा हुवा है कुछ लाल-लाल सा भी दिखाई दे रहा है और कुछ

भी दिख रहा है पालक भी दिख रही है दिख रहा दिखाई दे रही है।